हरा घास लगा हुआ है|

एंड उसके दोनों मंजिलों पर बैनर लगे हुए हैं।

बिल्डिंग बना है। लक्ष्मी ऑटो सेल्स लिखा हुआ है।